इतना सुंदर सुशोभित हो रहा है। इस मंदिर के अंदर तस्वीरे लगी हुई हैं तथा तस्वीरों के अंदर बहुत ही साफ प्रतिमा दिखाई दे --

तथा यह देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे असली का हाथी हो।

यह एक नदी का सामूहिक चित्र है जो बहोत दूरों तक फैली हुई है।

प्रिंटर कैसे प्रिंट करने की सब व्यवस्था पूर्ण दिखाई दे रही है। यह एक नई दुकान खुली होने की वजह से प्रॉपर पूरा सामान दिखाई नहीं दे रहा है तथा धीरे-धीरे ये व्यवस्था सारे जमाने के अनुसार वस्त्र निर्माण --

यहां सभी से संबंधित उत्पाद दिखाई दे रहे हैं तथा ये सब भोजन सामग्री से संबंधित हैं।

तथा इसके पड़ोस में उगे हुए छोटे-छोटे पेड़ पौधे इस पर पड़ इस प अअअ पहाड़ रुपी पत्थर की चट्टान की शोभा को सुंदर शोभयान म्मअ बना रहे हैं।

तथा पहाड़ के बीच में पसी हुई यह चट्टान बहोत ही सुंदर प्रतीत हो रही --

तथा उसके पीछे भी कुछ सामान रखा होने की वजह से वहां पर सुव्यवस्थित सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कुछ सुंदर आकृतियों की पिक्चरों से सजाकर बनाया गया है।

जिसमें आगे की तरफ कैश काउंटर बने होने की वजह से --

यह एक तालाब के पास का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तालाब के ऊपर एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है तथा तालाब के पड़ोस में छोटे छोटे हरे रंग के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि उस तालाब की शोभा को और बड़ा रहे है।

और एक आर्किटेक्ट के पीछे जो लोहे की लाइन खड़ी हुई है। वह एक लेंटर का बीम है। जिसके थ्रू एक प्रीति --

बड़ी इमारत का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर छोटे-छोटे बीम की सहायता से इस बिल्डिंग को मजबूत करने की --

पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है तथा इसके कार्य के निरापण के लिए इसका कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।

जो संपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है।

ये ख़ुशी का कर रहे हैं।